मेहेल टाइप की लग रही है जो कि बोहोत खूबसूरत लग रही है देखने में। जब इस ये यहां से इतना खुबसूरत लग रही है तो शायद अंदर एक बोहोत अच्छी-अच्छी चीजें होंगी और अ --

तो आप लोगों को भी मैं कहता हूं कि आप लोग भी जाइए घूमने-उमने के लिए तो एक मुर्गा चावल जरूर खाना बनता है।

और एक के लिए अच्छी चीजें है और ये एक बुक स्टॉल है जो की यहाँ पे हर सारी बुक मिल जाती है ठीक है तो धन्यवाद।